अ हैंगर और जा के बगल में एक पंखा लगा हुआ है उसके नीचे फेविकोल है।

यह फोटो कोई जिम का लग रहा है जिसमें सामने में तीन रनिंग पैड दिख रही है।

झूले लगे हुए हैं और सामने--

पूरा काला भूरा कलर का है और पानी का फुव्वारा बहोत अच्छा लग रहा है।

कार्य करती हुई दिख रहे हैं सामने उनके सामने बहोत सारे टीचर भी दिख रहे हैं।

यह दृष्टि काफी अच्छा लग रहा है सामने पूरा नीला कलर का आसमान भी देखा जा रहा है।

इस फोटो में एक परफेक्ट वाला इस--

सामने एक लाइट ऑरेंज कलर का पट्टा लगा हुआ है और एक सीढ़ी टाइप भी बना हुआ है नीचे पूरा हरियाली मिट्टी है।